वहाँ पे अलमारी में अगल - अलग भाग है|

वहाँ पे म न डेकरेशन भी किया दिखाई दे रहा है|

ब्लू कलर की शेरवानी पहनी दिखाई दे री हैं।

इस चित्र में ऑटो देखाई दे रहे हैं। ऑटो का कलर --

स्टेज जो में सुंदर सा ऐसा डेकोरटेशन किया हुआ|

डेकोरेशन किया हुआ स्टेज दिखाई दे रहा है। वहाँ पे रंगी बिरंगी लाइटिंग अ दिखाई दे रहीं हैं।

बेंच दिखाई दे रहें है। डेक्स दिखई दे रहे हैं |

गेट दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में खुला मैदान दिखाई दे रहे हैं |